एक क्लासरूम देखाई दे रहा है क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए देखाई दे रहे है एक आदमी बोर्ड पर कुछ लिखते हुए देखाई दे रहा हैं।

मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में हरे-हरे घास दिखाई दे रहे--

टेंट व्हाइट कलर का लगा दिखाई दे रहा है किनारे पर बहोत सारे गमले रखे दिखाई दे रहे हैं पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है सामने एक टंकी दिखाई दे रही है।

एक आँठ ठेला वाला दिखाई दे रहा है जिसके ठेले के ऊपर बहोत सारे टमाटर रखे दिखाई दे रहे हैं आदमी किलो रखे दिखाई दे रहा है कुछ दूरी पर ही एक लोडिग कार दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं खंभे दिखाई --